git checkout command पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि: git repository पर विविध files कैसे जोड़ते हैं
git repository से file कैसे मिटाते हैं
मिटाई गयी file को दोबारा कैसे प्राप्त करते हैं
एक file में किये गए बदलावों को कैसे हटाते हैं और
पिछले रिवीजन पर कैसे वापस जाते हैं
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu लिनक्स 1404
git 232 और gedit text editor
आप अपनी पसंद का कोई भी editor प्रयोग कर सकते हैं
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको terminal पर रन होने वाली लिनक्स commands की जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बधित लिनक्स tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
add देखते हैं कि git repository में विविध files कैसे जोड़ते हैं
terminal खोलने के लिए ctrl + alt + t दबाएँ
हम अपनी git repository mywebpage में जायेंगे जो हमने पहले बनाई थी
type करें: cd space mywebpage और enter दबाएँ
प्रदर्शन के लिए मैं html फाइल का उपयोग जारी रखूँगी
आप अपनी पसंद का कोई भी file type उपयोग कर सकते हैं
अभी हम दो html files बनायेंगे
अतः type करें: gedit space mystory html space mynovel html space ampersand
prompt को खाली रखने के लिए हम & ampersand उपयोग करते हैं enter दबाएँ
मैं इस फाइल में अपने writer document से कुछ code copy और paste करुँगी जो मैंने पहले ही सेव किया था
अब इस फाइल को सेव करते हैं
terminal में सबसे पहले git space status टाइप करके और enter दबा के git status check करें
यह दो untracked files दिखाता है
add हम tracking के लिए untracked files जोड़ेंगे
type करें: git space add space dot और enter दबाएँ
git add dot command staging area में सारी untracked files को जोड़ेगी
अतः वो दो files mystory html और mynovel html staging area में जोड़ी जाती हैं
एक बार फिर निम्न टाइप करके git status check करते हैं git space status और enter दबाएँ
हम देख सकते हैं कि git repository के staging area में हमारी दोनों files जोड़ी git हैं
अब अपनी files mystory html और mynovel html पर वापस जाते हैं
add हम code की कुछ अधिक लाइनें इन दोनों files में जोड़ेंगे
पहले की तरह मैं अपने writer document से copypaste करुँगी
एक बार फिर files को सेव करें और बंद करें
अब निम्न टाइप करके git का status check करें git space status और और enter दबाएँ
यह changes not staged for commit और modified: mynovel html और mystory html दिखाता है
इसका मतलब है कि बदलाव जो हमने किये वो staging area में नहीं जोड़े गए
अब इस point पर अपने काम को commit करते हैं
अतः type करें: git space commit space hyphen a space hyphen m space double quotes में added two files और enter दबाएँ
ध्यान दें जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा हमने कमिट करने से पहले staging area में संशोधित files नहीं जोड़ी थी और
और committing message के लिए editor भी नहीं खुल था
यह इसलिए है क्योंकि यहाँ हमने hyphen a और hyphen m flags उपयोग किये हैं
ये flags किसलिए हैं
अपनी slides पर वापस जाते हैं
hyphen a flag staging area में सारी संशोधित files को जोड़ने में उपयोग होता है
जब हम hyphen a flag उपयोग करते हैं तो हमें staging area में रूपांतरित files को जोड़ने के लिए अलग से git add command की ज़रुरत नहीं होती है
hyphen m flag command line में ही commit message देने के लिए उपयोग होता है
हम flags hyphen a और hyphen m को hyphen am की तरह उपयोग कर सकते हैं
terminal पर वापस जाएँ
git space log टाइप करके और enter दबाकर git log check करें
आप commits की सूची देख सकते हैं
ध्यान दें कि पहले नवीनतम commits सूचीबद्ध होते हैं
जिसका मतलब है कि commits कालानुक्रमिक chronological क्रम में सूचीबद्ध होते हैं
यदि आपने git repository में एक git file जोड़ दी है तो यह आसानी से हटाई जा सकती है
मानिए उदाहरण के लिए मैं mypage html file हटाना चाहती हूँ
type करें: git space rm space hyphen hyphen cached space mypage dot html और enter दबाएँ
यह command staging area में mypage html फाइल को हटा देगी
अब हम git space status टाइप करके और enter दबाकर git status को check करेंगे
यह कहता है कि file mypage html untracked है
अब हम निम्न टाइप करके file system से now file मिटा सकते हैं
rm space mypage dot html और enter दबाएँ
यह command mywebpage folder से उस file को पूरी तरह से हटा देगी
अब हम जांचेंगे कि git repository से now फाइल हटाई git है या नहीं
अतः type करें: git space status और enter दबाएँ
यह message deleted: mypage html दिखाता है
अब ls टाइप करके और enter दबाकर files की सूची देखते हैं
यहाँ हम mypage html file नहीं देख सकते क्योंकि यह मिटाई गयी है
इस point पर अपने code को freeze करते हैं
commit करने के लिए type करें: git space commit space hyphen am space double quotes में deleted mypage html और enter दबाएँ
अब निम्न टाइप करें git log देखते हैं git space log और enter दबाएँ
exit करने के लिए अपने keyboard पर q की दबाएँ
यहाँ हम commit message पढ़कर नवीनतम commit ज्ञात कर सकते हैं
अब मानिए हमने गलती से mypage html डिलीट कर दिया है और हम इसे दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं
हम पिछले कमिट्स से मिटाई हुई फाइल को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं
अब दूसरे commit से अपनी file को दोबारा प्राप्त करते हैं जो commit message added two files रखता है
दूसरे commit hash की पहली पाँच digits को चुनें
और उन्हें copy करने के लिए ctrl + shift + c कीज़ दबाएँ
पहली पाँच digits काफी हैं
अगर आप चाहते हैं तो आप पाँच से ज़्यादा digits भी copy कर सकते हैं
type करें: git space checkout space और commit hash को paste करने के लिए ctrl + shift + v कीज़ दबाएँ
अब file का name mypage html type करें और enter दबाएँ
अब git status check करते हैं टाइप करें git space status और enter दबाएँ
आप mypage html file देख सकते हैं
इस point पर अपना काम commit करते हैं
ध्यान दें कि जब भी हम कोई file जोड़ते या डिलीट करते हैं तो अपना काम commit करना बहुत ज़रूरी है
type करें: git space commit space hyphen am space restored mypage html और enter दबाएँ
अब files को सूचीबद्ध करते हैं टाइप करें ls और enter दबाएँ
हम देख सकते हैं कि हमारी file mypage html दोबारा प्राप्त हो गयी है
आगे हम देखेंगे कि फाइल में किये गए बदलावों को कैसे हटाते हैं
files खोलें टाइप करें gedit space mypage html space mystory html space ampersand और enter दबाएँ
हम mypage html और mystory html में कुछ रूपांतरण करेंगे
add दोनों files में कुछ लाइनें जोड़ते और मिटाते हैं
फिर files को सेव करें और बंद करें
कुछ स्थितियों में हम इन बदलावों के साथ आगे नहीं जाना चाहते
जिसका मतलब है हम अपने काम की पिछली stage पर जाना चाहते हैं
अब सीखते हैं कि यह कैसे करते हैं
पहले हम git status check करेंगे टाइप करें git space status enter दबाएँ
यह बताता है कि कुछ files रूपांतरित की गयी हैं
अब type करें: git space checkout space dot और enter दबाएँ
यह command हमारे काम के नवीनतम बदलावों को मिटाएगी
अब git status check करते हैं टाइप करें git space status और enter दबाएँ
यह बताता है: nothing to commit
अब files को यह देखने के लिए check करते हैं कि बदलाव अभी भी वहाँ हैं या नहीं
type करें: gedit space mypage html space mystory html space & और enter दबाएँ
हम देख सकते हैं कि हमारे संशोधन हटा दिए गए हैं files को बंद करें
अब git log check करते हैं टाइप करें git space log और enter दबाएँ
यह commits की सूची दिखाता है
अधिक देखने के लिए down arrow की दबाएँ
exit करने के लिए अपने keyboard पर q की दबाएँ
यदि आप एक line में commits सूची देखना चाहते हैं तो type करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
यहाँ आप एक line में उनके commit hash और commit messages के साथ commits की सूची देख सकते हैं
how अपने काम के पिछले रिवीजन में कैसे जा सकते हैं
इस समय हमारी repository में चार commits हैं
जिसका मतलब है कि हमारे काम के चार रिवीजन हैं
मानिये हम initial commit stage में वापस जाना चाहते हैं
अतः type करें: git space checkout space फिर initial commit के commit hash को copy और paste करें और enter दबाएँ
अब files को सूचीबद्ध करें टाइप करें ls और enter दबाएँ
यहाँ हम केवल एक ही file mypage html देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास केवल यही file थी
अब git log check करते हैं टाइप करें git space log और enter दबाएँ
हम केवल पहला commit देख सकते हैं जोकि initial commit है
वर्तमान संशोधन पर जाने के लिए type करें git space checkout space master और enter दबाएँ
term भविष्य के tutorials में term master के बारे में सीखेंगे
एक बार फिर निम्न टाइप करके git log check करते हैं
git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
अब आप सभी चारों commits देख सकते हैं अतः अब हम नवीनतम stage में हैं
इस तरीके से हम अपने काम की किसी भी stage में वापस जा सकते हैं
पुराने रिवीजन पर जाने के लिए एक अन्य तरीका है
type करें: git space reset space hyphen hyphen hard
फिर initial commit के commit hash को copy और paste करें और enter दबाएँ
अब git log check करते हैं टाइप करें git space log और enter दबाएँ
यह दिखाता है कि अभी हम initial commit stage में हैं
अब नवीनतम रिवीजन पर वापस जाने की कोशिश करते हैं
पहले की तरह type करें: git space checkout space master और enter दबाएँ
हम नवीनतम रिवीजन पर वापस जाने में सक्षम नहीं हैं
इसके बजाए हमें एक message मिलता है: already on master
इसका मतलब है यह हमारा नवीनतम रिवीजन है
अतः ध्यान दें एक बार जब हम command git reset hyphen hyphen hard उपयोग करते हैं तो हम नवीनतम stage पर वापस नहीं जा सकते
अतः हमें इस command के साथ बहुत सावधानी रखनी चाहिए
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा: git repository में विविध files कैसे जोड़ते हैं
* git repository से file कैसे मिटाते हैं * मिटाई हुई file को कैसे वापस लाते हैं
* file में किये हुए बदलावों को कैसे हटाते हैं और * पिछले रिवीजन पर कैसे वापस जाते हैं
एक नियत कार्य मेंअपनी git repository पर जाएँ जो as पिछले tutorial में नियत कार्य में बनाई
अपनी text file में कुछ संशोधन करें
बदलावों को commit करें
अपने पुराने रिवीजन पर फिर से जाने की कोशिश करें
अपनी text file में दोबारा कुछ संशोधन करें और बदलावों को हटाने की कोशिश करें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है